यहाँ पर हमे नदी दिखाई दे रही है जहाँ पर बहोत सारे लोग अ अ दर्शन कर रहे है ।

और एक अंकल जी कुछ बना रहे हैं एक दादा जी बैठे हुए हैं।

यहाँ पर हमे एक अ स्टोर रूम टाइप दिख रहा है जहाँ पर बहोत सारा सामान पड़ा हुआ है ।

एक हमें बहोत बड़ा अ दुकान दिखाई रहा है जिसके बाहर बहोत सारे लोग आते-जाते हमें दिखाई दे रहे हैं।

मेंहदी कलर और क्रीम कलर से पेंट की गई है।

और यहाँ पर हमे एक बोर्ड भी दिखाई दे रही है।